स्टेज दिखाई दे रहे है जिसमें नीली कलर के परदे है यहाँ तीन लेडीजे है जो कि नृत्य करते दिखाई पड़ रही है।